काफी सारे लोग वहां बैठ के खाना खा रहे हैं।

यहां पे एक लड़की फोटो खींच रहे है चार लड़कियों के।

यहां हर प्रकार का सामान उपलब्ध है।

इस चित्र में एक आदमी बैठा हुआ है।

यह दृश्य एक कैफे का है।

एक टेबल पर चार आइसक्रीम रखी हुई हैं।

एक अन्दर अं जगह पर लोग बैठे हुए हैं।

यहां पे लोग अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं।